नीचे हरे घास है और फूल भी है।

सर्विस जो मुजफ्फरपुर से आनन्द विहार जाती है।

फील्ड बहुत ही साफ सुथरा जगह है।

इस साइड ट्रक लगा हुआ है तर्क में के बहुत सारे पार्ट पुर्जे खुले हुए हैं।

इसमे लड़के सब बैठे हुए हैं लड़के लड़कियाँ पढ़ाई के लिए कॉनफेरेन्स हॉल बना हुआ है।

दो नंबर मे श्री अजय कुमार सिंह हैं।

बीच मे एक पिलड़ है पीले रंग हरे रंगों से रंगा गया है लाल रंगों से --

उसमें अंदर लाल कलर का मेट बिछया हुआ है एक आदमी पीले रंग टी-शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए हैं खड़े हैं।

और एक पुल लगा हुआ है जिसमें तार अ --